यहाँ आप देख रहे है ये एक पार्क है पार्क के बीचो बीच एक मूर्ति बनाया गया है किताब लेके खड़े है यही कानून लिखित है इस पार्क में बहोत अच्छा बनाया गया है चारो तरफ बनाया गया है बॉल पे लगा हुआ है पेड़-पोधे भी है ।

मैदान में एक बोलेरो खड़ा हैसफेद कलर का--